जमोल एप्लीकेशन में स्क्रिप्ट कंसोल एंड स्क्रिप्ट कमांड्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे स्क्रिप्ट कमांड्स के बारे में स्क्रिप्ट कंसोल विंडो कैसे प्रयोग करें स्क्रिप्ट कमांड्स प्रयोग करके मॉडल के डिस्प्ले को बदलना
पैनल पर टेक्स्ट की लाइन्स दिखाना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि जमोल एप्लीकेशन में आणविक मॉडल्स को कैसे बनायें और एडिट करें
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु ओएस वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 जावा वर्जन 7 जमोल पैनल पर डिस्प्ले को निम्न प्रयोग करके रूपांतरित किया जा सकता है मेन्यू बार में विकल्पों पॉप अप मेन्यू में विकल्पों या स्क्रिप्ट कॉन्सोल पर स्क्रिप्टिंग कमांड्स के द्वारा
पिछले ट्यूटोरियल्स में पॉप अप मेन्यू और मेन्यू बार प्रयोग करके हमने डिस्प्ले को रूपांतरित करना सीखा था
इस ट्यूटोरियल में हम स्क्रिप्ट कमांड्स प्रयोग करना सीखेंगे
कमांड्स का सेट स्क्रिप्ट कमांड्स कहलाता है
स्क्रिप्ट कमांड्स पैनल पर मॉडल के डिस्प्ले को कंट्रोल करती हैं
जमोल रसमोल प्रोग्राम पर आधारित कमांड लैंग्वेज प्रयोग करता है
इन कमांड्स को लिखना स्क्रिप्टिंग कहलाता है
जमोल की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का डॉक्यूमेंटेशन और कमांड्स की सूची इस लिंक पर उपलब्ध है
httpchemappsstolafedujmoldocs अब स्क्रिप्ट कमांड्स कैसे प्रयोग करें स्क्रिप्ट कमांड्स स्क्रिप्ट कॉन्सोल विंडो पर टाइप किये जाते हैं
स्क्रिप्ट कॉन्सोल जमोल की कमांड लाइन इंटरफ़ेस है
यह मेन्यू बार पर फाइल और कॉन्सोल विकल्प में उपलब्ध है
यह स्क्रीन पर प्रोपेन के मॉडल के साथ जमोल एप्लीकेशन विंडो है
अब डिस्प्ले बदलने के लिए स्क्रिप्ट कॉन्सोल को प्रयोग करना सीखते हैं
स्क्रिप्ट कॉन्सोल विंडो खोलने के लिए मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें
ड्राप डाउन में नीचे जाएँ और कंसोल पर क्लिक करें
स्क्रीन पर जमोल स्क्रिप्ट कॉन्सोल विंडो खुलती है
कमांड्स टाइप करने के लिए स्क्रिप्ट कॉन्सोल विंडो टेक्स्ट एरिया रखती है
विंडो में सबसे नीचे स्क्रिप्ट एडिटर विंडो खोलने के लिए एक बटन है
इस विंडो पर वेरिएबल्स क्लियर हिस्ट्री और स्टेट नामक अन्य बटन्स भी उपलब्ध हैं
उपलब्ध स्क्रिप्ट कमांड्स की सूची को दर्शाने वाले पेज को खोलने के लिए हेल्प बटन पर क्लिक करें
इस विंडो को बंद करने के लिए ओक बटन पर क्लिक करें
अब कुछ सरल स्क्रिप्ट कमांड्स लिखने का प्रयास करते हैं
इन कमांड्स को कैसे लिखें स्क्रिप्ट कॉन्सोल विंडो पर डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद कमांड टाइप करें
स्क्रिप्ट कमांड्स कमांड वर्ड के साथ शुरू होती हैं
स्पेसेस के द्वारा अलग किये गए पैरामीटर्स के सेट के साथ जारी रहती हैं
और एंड ऑफ़ लाइन कैरेक्टर या सेमीकोलन के द्वारा ख़त्म होती हैं
कमांड लाल दिखेगी जब तक आपने कमांड टाइप करना पूरा नहीं कर लिया है
कमांड को सक्रिय करने के लिए कीबोर्ड पर Enter की दबाएं
कॉन्सोल को मैग्निफाइ करने के लिए मैं कमाग स्क्रीन मैग्निफायर प्रयोग कर रही हूँ
उदाहरण के लिए प्रोपेन में सारे कार्बन्स के रंग को नारंगी में बदलने के लिए कर्सर को स्क्रिप्ट कॉन्सोल विंडो पर रखें
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें सिलेक्ट कार्बन सेमीकोलों कलर एटम्स ओरेंज सिलेक्ट कार्बन सेमीकोलन कलर एटम्स ऑरेंज कीबोर्ड पर Enter की दबाएं
अब पैनल पर प्रोपेन मॉडल में सारे कार्बन्स नारंगी रंग में हैं
अब सारे बॉन्ड्स के रंग को नीले में बदलें
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें सिलेक्ट अल्ल बॉन्ड्स सेमीकोलों कलर बॉन्ड्स ब्लू सिलेक्ट ऑल बॉन्ड्स सेमीकोलन कलर बॉन्ड्स ब्लू एंटर दबाएं देखें कि प्रोपेन मॉडल में अब सारे बॉन्ड्स नीले रंग में हैं
आगे अब बॉन्ड्स का साइज़ बदलते हैं
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें वायरफ्रेम 005 डेसीमल नंबर बॉन्ड्स की रेडियस को एंगस्ट्रॉम्स में लिखने के लिए प्रयोग होते हैं
एंटर दबाएं
प्रोपेन मॉडल में बॉन्ड्स के साइज़ में बदलाव देखें
उसी प्रकार बॉन्ड्स का साइज़ बढ़ाने के लिए प्रॉम्प्ट पर टाइप करें वायरफ्रेम 01 एक बार फिर बॉन्ड्स के साइज़ में बदलाव देखें
परमाणुओं का साइज़ बदलने के लिए हम कमांड प्रयोग करेंगे स्पेसफिल के बाद डेसीमल नंबर
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें स्पेसफिल 02 डेसीमल नंबर परमाणु की रेडियस एंगस्ट्रॉम्स में दर्शाता है
एंटर दबाएं
देखें कि प्रोपेन अणु में परमाणुओं का साइज़ घटता है
उसी प्रकार परमाणुओं का साइज़ बढ़ाने के लिए टाइप करें स्पेसफिल 05 एंटर दबाएं
आप परमाणुओं के साइज़ में बदलाव देख सकते हैं
वैकल्पिक रूप से हम कमांड सीपीके के बाद परसेंटेज या डेसीमल नंबर भी प्रयोग कर सकते हैं
परसेंटेज परमाणु की वैंडरवाल्स रेडियस दर्शाता है
उदाहरण के लिए टाइप करें सीपीके 20 और एंटर दबाएं
परमाणुओं के साइज़ में बदलाव देखें
जमोल पैनल पर टेक्स्ट की लाइन्स दर्शाने के लिए कमांड्स लिखना संभव है
टेक्स्ट के लिए कमांड लाइन सेट एचो के साथ शुरू होती है
स्क्रीन पर यह टेक्स्ट की स्थिति के बाद आता है
उदाहरण के लिए हम पैनल के ऊपरी सेंटर पर अणु का नाम प्रोपेन दर्शाएंगे
अतः टाइप करें सेट एको टॉप सेंटर सेमीकोलन एको प्रोपेन औरएंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट प्रोपेन पैनल के ऊपरी सेंटर पर दर्शाया गया है
हम पैनल पर टेक्स्ट की अन्य लाइन्स भी दर्शा सकते हैं
उदाहरण के लिए मैं पैनल के नीचे बाएं कोने में कुछ टेक्स्ट चाहती हूँ
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें सेट एचो बॉटम लेफ्ट सेमीकोलन एचो थिस इस आ मॉडेल ओएफ प्रोपेन एंटर दबाएं
हम पैनल के नीचे बाएं कोने पर टेक्स्ट लाइन देख सकते हैं
दर्शाये हुए टेक्स्ट का रंग साइज़ और फॉन्ट बदलना भी संभव है
उदाहरण के लिए मैं टेक्स्ट एरियल इटालिक फॉन्ट में चाहती हूँ
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें फोंट एचो 20 एरियल इटालिक एंटर दबाएं
यह टेक्स्ट को एरियल इटालिक फॉन्ट में बदल देगा
टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम कलर एचो के बाद रंग का नाम प्रयोग करेंगे
अतः टाइप करें कलर एचो येलो और एंटर दबाएं
फॉन्ट के रंग में बदलाव देखें
इसी तरह आप और अधिक कमांड्स खोज सकते हैं और बदलावों को देख सकते हैं
इसको सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा स्क्रिप्ट कमांड्सऔर स्क्रिप्ट कंसोल हमने निम्न भी सीखा स्क्रिप्ट कमांड्स प्रयोग करके मॉडल की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ बदलना और पैनल पर टेक्स्ट की लाइन्स दिखाना
एक नियत कार्य में 3 methyl पेंटाने का मॉडल बनायें
निम्न करने के लिए स्क्रिप्ट कमांड्स प्रयोग करें
सारे हाइड्रोजन्स का रंग नीले में बदलें
सारे बॉन्ड्स का रंग लाल में बदलें
और अणु को स्पिन के लिए सेट करें
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद